सामने एक सैलून दिखाई दे रहा है सैलून बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां टीन से शेड भी बनी हुई दिखाई दे रही है।